यहांँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिस पर से जल गिर रहा है कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे है।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

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रही है एक रोड के किनारे कुछ बॉर्डर बनी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ गुम्मटे बनी हुई है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर एक मन्दिर सा बना हुआ हैं जो दिखाई --